और किनारे किनारे में पौधा भी लगाया हुआ है।

और बाउंड्री के अगल बगल में बाइक और स्कूटी लगे हुए हैं।

स्टेशन के नीचे में टाइल्स और पलस्तर किया हुआ है।

और इस कमरे के दूसरी तरफ में शिशा लगाया हुआ है जोकि वाइट कलर का है।

यहां पर एक सीढ़ी भी लगाया हुआ है और सीढ़ी के ऊपर में टाइल्स लगा हुआ है जो कि ब्राउन कलर का है।

और इस दीवाल में बोर्ड भी लगाए हुए हैं।

इसकी दीवार की कलर ब्राउन है और ऊपर सीलिंग में व्हाइट पुट्टी किया हुआ है।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

और इस रोड के किनारे किनारे में घर बना हुआ है।

नीचे में वाइट कलर का टाइल्स लगा हुआ है।

और इस दुकान के बाहर में बोर्ड पर एक्सिस बैंक लिखा हुआ है।

यह एक गार्डन का दृश्य है इस गार्डन के चारों तरफ में बाउंड्री किया हुआ है।

इस कमरे में एक पोस्टर लगाया हुआ है।

और पोस्टर के ऊपर बालाजी लिखा हुआ है।

यह एक छोटे से रेस्टोरेंट का दृश्य है।